यहां मुझे अअ कुछ मिस्त्री दिख रहे हैं कुछ अ पत्थरे ईंटे।

और एक के गले में यीशु मसीह का लॉकेट लटका हुआ है कुछ लेडीसे हैं कुछ बच्चे भी हैं यहां पे--

और स्कूल की बिल्डिंग लग रही है बिल्डिंग के बाहर एक छोटा सा मंदिर है और बड़े-बड़े पेड़ हैं।

अ सामने मुझे पार्क सा दिख रहा है अ गोल राउंड सा बना हुआ उसके अंदर वोटर है।

ये मुझे एक हार्ट दिख रहा है जिसमें वाइट बालूपूरी--

लाइट्स लगी है एक और गेट प्लाई का दिख रहा है और सामने भी एक गेट दिखरा है।

यहां सामने मुझे दूध डेरी की दुकान देखरी है जिस पे रेड कलर से--

और कुछ वही पाल विंडो से ही कुछ सामने लोग खड़े हैं सामान खरीदने के लिए।

यहां सामने बहोत सारी पब्लिक है और एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर पे--

एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ है अ जिसपे जिओ लिखा हुआ है।

तो पूरी लाल कलर से पेंट है और आगे दो--

यहां सामने मुझे नीचे ग्रीन कलर की मैट बिची हुई है मंडप बना हुआ है जो मंडब के ऊपर--

एक नदी दिख रही है साइड में एक पेड़ की टहनी दिख रही है।

लेडीजें हैं कुछ खड़े हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

पूल है अ एक स्कूटी खड़ी हुई है और दो लड़कियाँ हैं एक बैग रखा है जमीन पे।

बहुत सारी बिल्डिंग में विंडो है एक गेट है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं स्टूल रखा हुआ है पीछे घर है।

यहां सामने मुझे बिल्डिंग दिख रही है सड़क दिख रहा है सड़क पे--

ये एक मस्जिद लग रहा है और यहां पे सीढ़ियां दिख रही है मुझे सामने खड़ी टंगी हुई है।

कुछ लोग मैट पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग बातें कर रहे हैं।

और सामने टाइम जोन लिखा है गेम का।

और बालून से सजा हुआ है मिरर है दुकान में पंखे लगे हुए हैं लाइट्स लगी हुई हैं।

कुछ बाइक्स हैं और कुछ रिक्शे जा रहे हैं रिक्शे पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और एक बाउंड्री खींची हुई है जिसमें लोहे की अ जाली-जाली सी बाउंड्री लगी हुई है।

सामने मुझे एक र रूम दिख रहा है हॉल है।

और ग्राउंड रेड कलर की बाउंड्री बनी है और इसमें लोहे के--

अ मुझे एक रूम दिख रहा है जिनमें अ लोग जुंबा कर रहे हैं बहुत सारी लेडीज हैं और जेंट्स भी है कूलर रखा हुआ है।

पानी की बोतल रखी है पंखे हैं लाइट्स लगे हुए हैं और बालून से डेकोरेशन किया हुआ है।

और एक जहाज है जहाज को रस्सियों से रस्सियों से बांधा गया है।

बड़ी-बड़ी विंडो हैं गेट हैं और बाउंड्री है अ स्काई ब्लू कलर की बाउंड्री कलर की हुई है।